यह एक जलेबी है जो की भारत का भारत का क्या है मिठाई है जो इसमें एक मिठाई रखा हुआ है प्लेट में।

मॉल के आगे खरा है गार्ड जहाँ पांच छह गो मोटरसाइकिल लागल हई

कलम बूढ़ा आदमी देई छ एक महिला कलम से लिख रिहल छ।

ई नाव है नाव पर हई पाँच गो आदमी बैठल जई में सेफ्टी पिन्हले हई सब दुगो खेवई छै।